और कॉलोनियों { के बिच में एक मैदान होना ही चाहिए अ छोटे बच्चे है अ बड़े जो बुजुर्ग होते है उन्हें एक टहलने का --}

अ घर के निचे अगर ये स्पेस खाली हैं तो आप इसे एक बिज़नेस तौर पे देखें तो बहोत अच्छा यूज़ कर सकते हैं जैसे किराना दुकान --

ये सारी चीज़ें एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस आईडिया हो सकती हैं मिल्क बिज़नेस --

आ बिलासपुर के मंदिर चौक में विद्या मंदिर है जो पुस्तकों के आ थोक विक्रेता के लिए कुछ ज़्यादा फेमस हैं।

मंदिर एक ऐसी जगह हैं जहाँ पर मानसिकता एकाग्र हो जाती हैं।

टेक्नोलॉजी आजकल अपडेट हो रहै हैं।

जो कि आज सात सुरों से बंधा हुआ एक क्रमबद्ध तरीका हैं ये--

बहुत साड़ी चीज़ें हैं और री कनेक्ट हो जाती हैं मुझे तो झूला झूलना बहोत पसंद हैं बहोत ज़्यादा--

अ किसी पार्क में अ शेर को अ बिलकुल नज़दीक से देखना अपने आप में एक अ बहुत अच्छा अ बहुत --

ऐसा नहीं करना चाहिए अ खाने की वैल्यू समझना चाहिए --

गाड़ी की समय-समय पे सर्विसिंग करवाना चाहिए इससे गाड़ी क्या मेन्टेन होती हैं क्या मेंटेनेंस होती हैं।

यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर के डिग्री या कोर्सेज कराये जाते हैं जो बेनिफिट होते हैं।

यह सभी की छुट्टी होती है सब मौज-मस्ती करते है छुट्टियों मैं संडे फंडे --